यह एक मैदान की तस्वीर है जिसमें बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं।

बाइक की एजेंसी है जिसमें बहोत सारी बाइक खड़ी हुई है।

और इसमें पानी में एक आदमी चल रहा है।

इसके पीछे एक लाल कलर की जगह--

यह एक ग्राउंड की तस्वीर है।

जिन्होंने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा रखा है।

जो पढ़ रहे हैं और कुछ व्यक्ति उनके फोटो खींच रहे हैं।

और इनमें व्हाइट कलर के दो तीन बॉक्स रखे हुए है।

सीढ़ियां भी है जिनके वहां लोग और उसके बराबर में गाड़ियां खड़ी हुई है।

ऊपर खड़े हुए हैं और इस नाव का कलर नीला है।

और इनके सामने सूरज और नदी है।

इस ग्रिल में एक लुगाई खड़ी हुई है।

जो अलग अलग रंग के झंडे लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में बहुत सारी खाली जगह है जिसमें--

और इनका एक टीचर है।

एक नीले चद्दर के ऊपर बहुत सारी मछलियां पड़ी हुई है।

और कुछ बाइक और कार स्कूटी खड़ी हुई हैं।